कोई और चीज वो खेलना पसंद करते हैं तो ऐसे कई जगह ग्राउंड हमें देखने को मिल --

रेलवे स्टेशन का इस्तेमाल करते हैं। आज-कल जो रेलवे स्टेशन हैं वो हर जगह उपलब्ध ही है। ये काफी सालों से उपलब्ध --

बर्गर-किंग एक बहुत ही बड़ा फास्टफूड नेटवर्क है यहाँ पर लोग खाना पसंद करते है बर्गर किंग का जो बर्गर होता है वो बहुत ज्‍यादा फेमस होता है।